ऊपर में हमें झाड़ देखने को मिल रहा है जोकि बहुत सारे झाड़ लगे हुए नीचे में हमें--

लैंप देखने को मिल रहा है फुल टाइप का--

नदी के उसे तरफ हमें बहोत सारे पेड़ देखने से मिल रहें--

वहीं पे हमें साइड में नलजल का पानी था टंकी देखने को मिल रहा है।

मैं यहाँ पे बस स्टैंड का फोटो देखने को मिल रहा है जहाँ पे बहुत सारे बस लगे हुए हैं।

उसके हाथ में एक लाल कलर का ट्रॉली है और उसके पीठ पे एक आसमानी कलर का बैग टंगा हुआ है वहीं पे एक मोटरसाइक--

उसके बगल में हमें नीचे में छोटे-छोटे प्लास्टिक के फूड बॉक्स देखने को मिल रहा है एक कंप्यूटर देखने को मिल रहा--

हमें यहाँ पे सैलून का फोटो देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पे साइड में टेबल देखने को मिल रहे हैं।

साइड में हमें लाइट वाला चेयर देखने को मिल रहा है।

उसके नीचे हमें एक ड्रॉइंग स्टैंड देखने को मिल रहा है।

पास में हमें बहुत सारे बैलून देखने को मिल रहा है इस बैलून के ऊपर हमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए देखने को मिल रहा है।

उसके बगल में हमें बहोत सारी छोटे छोटे मक्खियां टाइप के--

हमें यह एक जिम के अंदर का फोटो देखने को मिला है।

ऊपर में हमें फैन देखने को मिला है।

टाइटल वाला एक्सरसाइज करने वाला रखा हुआ है।

वहीं पर हाथ में से उठाने वाला डंबल रखा हुआ है।

उसके ऊपर हमें एक फैन लगा हुआ देखने को मिल रहा है।

वहाँ पे चर्च महाराज जी के फोटो लगे हुए हैं।

हमें यहां पे टेंपो स्टैंड का फोटो देखने को मिल रहा है।

गेट के बगल में हमें वहाँ पे बच्ची देखने को मिल रहा है जो बच्ची ने--

वहीं पे हमें आसपास बहुत सारे हमें पेड़ देखने को मिल रहा है।

हमें यहाँ पे दुकान प्लाई बोर्ड का दुकान देखने को मिल रहा है।

और आलमीरा के ऊपर हमें बहुत सारे प्लाईवुड के नए-नए डिजाइन लगे हुए मिल रहे हैं।

हमें यहां पे बहुत सारे कार्टून देखने को मिल रहा है।

साइड में हमें टेबल और चेयर देखने को मिल रहा--

हमें यहां पे इंडस्ट्री का सर्विस सेंटर का फोटो देखने तो मिल रहा है।

जहाँ पे हमें यहाँ पे फोर व्हीलर देखने को मिल रहा है साइड में हमें टेबल देखने को मिल रहा है।

वहीं पे हमें एक एयर डैश साफ करने वाला वहाँ पे पाइप हमें प्रेशर पाइप देखने को मिल रहा है।

मैं यहां पे एक पेट्रोल पंप का फोटो देखने को मिल रहा है पेट्रोल पंप के फोटो --

वहीं पे हमें एक टेबल बेंच टाइप का देखने को--

हमें यहाँ पे बहुत सारे हमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देने वाले जनरेटर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।

हमारे सामने एक किचन का रूम का फोटो है किचन के उधर हमें एक बड़ा सा स्लैप देखने को मिल रहा है।

दिवाल पे में बहोत सारे हमें पेंटिंग देखने को मिल रहा है साइड में चेयर --

ऊपर में हमें प्लाई बोर्ड का डिजाइनर दिया हुआ प्लाईववुड का डिजाइन देखने को मिल रहा है।

दीवार पे हमें कुछ पोस्टर लगे हुए देखने को मिल रहे हैं।